गेट है रोड है ब्रेकर है बैनर है स्कूल का--

मैन गेट है स्कूल का परदा है खिड़की है पेड़ सब है पेड़ का पत्ता है।

आद आदमी का जैकेट है बैलून है किताब सब है।

इस फोटो में तीन लड़का है। दो लड़की है एक स्कूटी है बाइक है दो स्कूटी है एक इंसान है गार्ड है।

इस फोटो में गाते हैं मंदिर है भगवान है।

पेड़ है पौधा है भगवान् जी है।

इस फोटो में सीसी सीसा है ये चेयर है रिमोट है टेबल है बेड है लाइट है फेन है।

पेपर है लाइट है स्कूल है खिड़की है टाइल्स है ओरत है बच्ची है।

नीला बादल है लाइट है ईटा है पथर है--

इस फोटो में स्मार्ट बोर्ड है प्रोजेक्टर है बच्चा है टीचर है लाइट है स्टूडेंट है महात्मा गाँधी है।

टीचर है लाइट है प्रोजेक्टर है पर्दा है टाइलस है बॉल है।

इस फोटो में पिलर है ईसान है कपड़ा है घर है आदमी है लड़की है स्वेटर है कारपेट है मूर्ति है।

इस फोटो में स्टैचू है बैनर है नेता है फूल है तिरपाल है बैनर है बाउंड्री है।

टाइल्स है टिश्यू है बोतल है मिठाई है बैलून है जुमर है ऐ_सी है चश्मा है प्रोजेक्टर है टीवी है।

इस फोटो में प्रिंस प्रिंटर है बैनर है लाइट है।

उसके बाद से गुड्डा है गुडिय है फ्रेंड्स टेप का है सीरी है टाइल्स है ईटा है फुल है पहाड़ है।

रेंट टेबल्स है फैन टेबल्स है।

उस तकिया है फिरस लाइट है फिर से पेंटिंग है वॉलपेपर है पर्दा है पपल कलर का लाइट --

इस फोटो में कपड़ा है बच्चा है बच्ची है मैडम है दो कुर्सी है टेबल है।

इस फोटो में स्कूल है सीसा है सी_आर_पी पब्लिक स्कूल है शीशा है।

लाइट है आसमान है सूरज है।

फोटो में इंशान है प्लेयर है लाइट है आसमान है रंगीला है।

इस फोटो में स्कूल है घास है ठेला है आदमी है घास है रोड है।

इस फोटो में मछली है बाल्टी है फसुल है इंशान है कार्पेट है टेम्पू है पटिया है।

लाइट है सीढ़ी है लिफ्ट है।

इस फोटो में इंशान है पानी है नदी है नाला है घास है बलून है चमके वाला तार है।

ट्रिपाल है बच्चा है साड़ी है कपड़ा है शॉल है प्रसाद है केला है नारयल है सूप है।

सूर्य की रोशनी है फिर से घास है फिर से रंगीला है।

उसके बाद से मछली काटने वाला है लाइट है जुमर है मछली है छोटा वाला मछली के अन्दर में बहुत सारे है।

फोटो में बतख है इन्शान है पहाड़ है गिट्टी है पानी है नल है योजना है उसके बाद से फिर बाज है पाईप है।

इस फोटो में सीसा है पथर है कपड़ा है ऐ_सी है कार्टून है इंसान है।

जमीन है फिरसे जमीन है पोधा है आसमान है रंगीला है।

इस फोटो में मेला है मेला में बहुत सारा झुलवा है उँ अ घूमने वाला झूला है फिर से आदमी है इंसान है।

इस फोटो में टेडी बेयर है बहुत सारा है उसके बाद से टेडी बेयर है घर है कुड्सी है टीवी है कार्टून है चेयर है इन्शान है।

इस फ़ोटो में लक्की स्टोर है लाइट गहना है।

खपरा है मिठाई है पंडाल है फूल है।

वाइट लाइन है दीवार है ड्रम है बाटा का शोरूम है पी_सी जेवेलर है ताजमहल जेवेलर --